कब बिठा के पूजा करने का आयोजन रहा है जो --

इस साज के बिना अधूरा --

पाया पर छोटे-छटे पहाड़ पत्थर है जिसके लोग बीच अपने पिकनिक मना कर आनंद उठाते है अपने परिवार के साथ।

ये चौड़ाई में फैला हुआ है इस घर के चारों ओर एक मैदान है।

चारों तरफ से घेरा डाला गया है सिक्योरिटी मामलों में बहुत ही बढ़िया है।

एक जगह पानी भी इकट्ठा किया गया है जिससे --

इसमें से कुछ बड़े एवं छोटे पेड़-पौधे भी है और यह जंगल काफी घना है और यहां पर --

ऊपर में कमल का फूल भी बनाया गया है और चारो साइड में त्रिशूलनुमा अकार दिया गया है जो बढियाँ दिख रहा है।

और इसका टिकट फायर भी बहुत ही उचित है और ये कम पैसे में अ लोगों को यात्रा करवाता है।

कुछ काम करने के लिए आधुनिक मशीन हैं जिस मशीन में --

यहां देवी-देवताओं का प्रतिमा बनाया गया है जो कि बहुत ही खूबसूरत और अच्छा दिख रहा है।

एगो बहुत ही बढ़िया जिमर है और बहुत अच्छे-अच्छे समान है बहुत अच्छे-अच्छे ट्रेनर है जो हेल्प करते है।

को कटिंग करके ये यहीं से ऊपर जाने के लिए एक बहुत ही बढ़िया रास्ता बनाया जिससे पर्यटकों का --

लगता है जो यहां पे इस चर्च बोला जाता है यहां के फादर --

चर्च के बाहर झंडो तोलन कर रहे हैं जो काफी अच्छा है और यहां पर इन में से कुछ --

चेयर में भी बैठने के लिए बहुत अच्छे --

है और यहां पर भी बहुत अच्छे-अच्छे सामान एवं खाने-पीने योग्य --

मिलते है और यहाँ के फ़ूड बहुत ही हाइजीनिक होते हैं और साफ़-सुथरा होते है और यहाँ की जितने भी वेटर है वो भी बहुत अ--

और यहाँ पर बोटिंग भी बहुत अच्छे से नाव को कलर करके बहुत अच्छे-अच्छे कलर में करके यहाँ दूर-दूर से लोग घूमने के लिए एवं परिवार के साथ --

जिसमें काफी भीड़ है दोनों तरफ से अच्छे फुटबॉल खेले जा रहें हैं और खेल जीवन के एक अभिन्न अंग है।

हर चीज के लिए एक अलग-अलग मशीन है जो मशीन ज --

जिन्हें भी बोटिंग करवाते हैं उसमें सिक्योरिटी का खास ध्यान रखा जाता है एवं सबको --

उचित मूल्य पर मिलते है यहां पर दूध घी वगैरा सब कुछ ताजा एवं बहुत ही बड़े और --

यहाँ पर कोई भी पुरानी से पुरानी यहाँ पर हर एसेसरीज मिलती है और यहाँ पर बाइको की बढ़िया काम होती है जो --

और बहुत बढ़िया थेरेपी मिलती है यहां पे।